एक लड़का हाथ में मोबाइल लिए हुए दिखाई दे रहा है और एक आदमी जिम करते हुए दिखाई दे रहा है।

इस बंगले के सामने एक लाल और काले कलर की कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

जो की लाल और सिल्वर कलर से बनाया गया है इसके जस्ट सामने ही सफेद कलर का फूल दिखाई दे रहा है जो की बहुत ही आकर्षक लग रहा है।

सिंहासन के जस्ट सामने ही एक नॉर्मल कुर्सी रखी गई--

इस फैक्ट्री में बोहोत सारे वर्कर दिखाई दे रहे हैं और इस फैक्ट्री में एक लाइट दिखाई दे रही है।

यह एक दुकान है जिसका नाम इस दुकान का नाम हाइजीन स्टेशन रखा गया है।

यहां की दुकान में जो रूम बनाए गए हैं वो कांच के गिलास से बनाया गया है जो कि देखने में बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है।

यह बहोत ही आकर्षक हॉल है जिसमें एक औरत भाषण देते हुए दिखाई दे रही है।

जिसके में दरवाजा लगा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है इस सीढ़ी के जस्ट सामने ही एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें ये किचन का दृश्य दिखाई दे रहा है यहां के पत्थर काले कलर से पत्थर से बनाया गया है।

सड़क के साथ साम आमने सामने बहोत बड़े बड़े शोरूम दिखाई दे रहे हैं।

यहां का वातावरण बहोत ही शांत दिखाई दे रहा है इस पर्वत पर कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

यहां पर बहुत सारा मिर्च दिखाई दे रहा है मिर्च को साफ करते हुए एक आदमी दिखाई दे रहा है।

यहां पर उन्नीस गिलास रखा हुआ है इसके पे उन्नीस गिलासो से उनका श्रृंखला बनाई गई है।

फौजी रेस्टोरेंट है जिसके अंदर हमें दो लाल कलर की कुर्सी दिखाई दे रही है।

सड़क पर तीन रास्ता दिखाई दे रहा है जहां पर बारिश की वजह से बहुत सारा पानी जमा हो गया है जिससे पब्लिक की भीड़ दिखाई दे रही है यहां पर।

यह एक पुरानी जगह है जहां पर ईट सीमेंट से कुछ चबूतरे बने गए है।

चबूतरो के ऊपर लोहे के सरिया से छड़ों को जोड़ जोड़ के खंभे बनाए जा रहे हैं।

यह एक किराना स्टोर की दुकान है जो की नवसारी में है।

नाज वेफर्स साबुन तेल शैंपू इत्यादि चीजे हमे यहां पे उपलब्ध मिलती है।

यह एक रिजर्व बैंक है यहां इस बैंक में काम करते हुए आदमी दिखाई दे रहे हैं।

इस रोड के सामने ही जो घर दिखाई दे रहे हैं वह मेहरून न कलर से बनाए गए हैं जो की बहोत ही प्यारा बनाया गया है।

इस पार्क में एक लाल और काले कलर की साइकिल खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर हमें कुछ दुकाने दिखाई दे रही है। जिसमें एक दुकान का नाम है आकाश दीप अपार्टमेंट ।

मौलाना परफ्यूम एंड टेलर्स मौलाना परफ्युम एंड टेलर्स यहां पर सफेद कलर के चैनल दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे सफेद कलर का तीन गेट दिखाई दे रहा है इसके पास पास दो हमें कांच की खिड़कियां दिखाई दे रही है।

यह एक जिम सेंटर है जोकि बहोत ही आकर्षक दिखाई दे रहा है।

यह जिम सेंटर क्ले करह ग्रे कलर की दीवारें और फर्श बनाई गईं हैं।

यहां पर एक सड़क है सड़क के बगल में बहोत सारी बिल्डिंग दुकानें दिखाई दे रहे है।

वहां का वातावरण बहोत शांत है वहां पर दो बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है।